चेयर लगे हैं वहां पे पेड़ हैं दीवाल हैं आड़ी अ।

सामान वहाँ पे बहुत सारे बॉल है चप्पल जूते हैं टी शर्ट हैं।

पंखे हैं चार पांच अ खम्बे चेयर हैं वहाँ पे लाइट हैं तार तार।

लॉन में वो टेबल लगे वहां पे लाइटिंग वाले--

सफ़ेद दीवाल हैं आस पास पेड़ हैं खम्बे लटके हैं अ।

परमात्मा एक की दुकान हैं वहाँ पे टावर लगा हैं सुरेश आर्ट ।

कार है वहां पे ट्रक है च दुकान है वहां पे टीन की--

वहां पे दुकान है बैंक है एक गाड़ी है चार पांच एक ल आदमी है वहां पे--

जे.सी.बी. हैं पिक अप हैं वहाँ पे एक दीवाल हैं उधर घर हैं कार हैं।

आदमी जा रहे हैं बहुत सारे आव नाव पे से।

वहां पे कोई तो अभी बैठा हैं गाडी हैं वह पे ब्रिज बना बन रहा हैं।

वहाँ पे भुट्टे हैं दस बारह वहाँ पे कचरा हैं इधर दीवाल हैं।

अ मशीन हैं वहां पे कंघी हैं कैंची हैं औजार फाठा सब हैं।

ऊपर कार है लाइट है तीन-चार--

एक मैडम हैं वहां पे उनको कोक खिला रहे हैं कबड्डी खिला रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक का समान हैं वहाँ पे आस पास अ सामान ही सामान हैं।

अ ट कफ है वहां पे दो आदमी हैं कूलर हैं।

गेट है नीले कलर का वहां पे बोर्ड लगा है सफेद कलर की दीवार है इधर-उधर सामान है वहां चेयर है पंखा है कूलर है।